गन्दा भेल है अ साइड - साइड में हरियर-हरियर पेड़-पोधा है अ पुल के ऊपर में एगो लोहा कलर सी रुकावत करल बनल है।